बैनर में एक औरत का तस्वीर है।

रेली है और एक फ्लाईओवर है।

बोर्ड पे मुझे ग्रीन मेडिकल क्रॉस भी दिखाई दे रहा है।

ये दुकान एम_जी रोड नियर बालाजी मंदिर पासीघाट ए_पी पे पड़ता है।

बोर्ड पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के आगे एक बहोत बड़ा ग्राउंड भी है।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी दिख रहा है।

और कुछ एक फील्ड भी है।

इस तस्वीर में मुझे आलू दिखाई दे रहा है।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

दोनों ने अपने सर पे येलो कलर का हेलमेट पहना हुआ है।

गाड़ी का कलर व्हाइट है।

इस के पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा है।

टेबल के ऊपर ग्लास जग रखे हुए हैं।

और दूर में मुझे पहाड़ के नीचे कुछ घर भी दिखाई दे रहा है।